और उसके बगल में बहोत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

जैसे कि अखरोट यह सब रखा गया है छुहारा किशमिश यह सब रखा गया।

इस दुकान में बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

उसका टायर काले कलर का है उसके बगल में बहुत सारी पोले लगी हुई है पास में एक बाइक लगा हुआ है जो की ब्लैक और रेड कलर की है।

उसके बगल में वाइट कलर का बहुत सारा चट्टान है।

सामने बहुत सारी चेयर लगाई गई है वो भी काले कलर की है सामने बहुत सारा बैलून लगाया हुआ है व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का और क्रीम कलर का और पीला कलर का भी है।

इसके बगल में बहोत बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ है जो की पीले कलर की है।

बगल में दो तीन चेयर रखी हुई है जो की क्रीम कलर की है।

सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है।

इसमें गिट्टी बालू और सीमेंट दिख रहा है।

उसमें बहुत सारे ईंटें लगाए गए हैं।

उसके बगल में एक रॉड है जो कि रेड कलर की है व्हाइट कलर की है।

आसपास बहुत सारे मिक्सचर के पैकेट रखे हुए हैं जैसे कि खट्टा मीठा के मूंग दाल के।

पीली कलर की सामान फेंकी हुई है।

उसके बगल में एक और गाड़ी है जिसका बोनट खुला हुआ है जो कि काले कलर कि है।

यह दृश्य में सामने बहोत सारे कांच के बनाए हुए हैं जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है जिसमें बहुत सारी मछलियां है।

सामने लैंप लाइट लगाई गई है।

उसके बगल में हरी हरी छोटी छोटी घासे जमी हुई है पास में एक रोड गया है उसके बगल में एक पोल है।

क्योंकि ऑरेंज कलर का है और ऊपर से इंटा दिया हुआ है और रेड रेड कलर की ईंटे लगाए हुए हैं।

जो कि येलो और ग्रीन कलर की है।

जिसका शटर नीले कलर का है।

अंदर में बहुत सारा गिफ्ट पैक करने वाला प्लास्टिक रखा हुआ है जो की अलग अलग कलर का है जैसे कि पिंक कलर का तो बैंगनी कलर का तो गोल्डन कलर का है पास में एक--

आस पास बहुत सारे फूल लगाए गए हैं।

यह दृश्य एक स्टूडियो का है।

पास में बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और लकड़ी टूट के गिरी हुई है।

इसके बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जोकि ग्रीन कलर की है।